दुकान दिख रही है चॉकलेटी कलर की लोग बैठे हुए दिख रहे कुछ लोग खड़े हुए दिख रहे तीन कुर्सीया दिख रही है व्हाइट कलर की बॉक्स दिख रहा है।

एक ग्राउंड दिख रहा है रेड कलर की दिख रही है उसे व्हाइट कलर पतंग दिख रहा है न्यू अँम्बुलंस दिख रहा है कार दिख रहा ह.